meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
आज हम fuzzy select tool के बारे में बात करेंगे
यह लगभग select by colour tool के जैसा ही है
लेकिन fuzzy select tool केवल एक निकटवर्ती क्षेत्र चुनता है और colour select tool समान रंग वाले सारे क्षेत्रों को चुनता है
यहाँ कुछ समान विकल्प हैं जैसे replace add substract और intersect with the current selection और अब मैं replace चुनती हूँ
यहाँ आप वही विकल्प देख सकते हैं antialiasing antialiasing
अगर हम antialiasing चुनते हैं चुने हुए का border sharp नहीं होता है और आपको चिकने कोनें प्राप्त होते हैं
और अगर यह चयनित नहीं है तो आपके पास चयनित और अचयनित के बीच में वास्तव में एक sharp border है
आगे feather edges और select transparent areas विकल्प हैं
संभवतः mask sensor का उपयोग करते समय select transparent एरियाज़ उपयोगी हैं
sample merged अन्य की तरह समान है और यह सारी दिखने वाली layers को चुनता है
अगर यह चयनित नहीं है तो यह मौजूदा layer पर कार्य करता है
अगर आप image के पूरे output से कुछ चुनना चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनें
यह threshold है जो बताता है कि चुनाव में होने या न होने के लिए दो रंगों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए
यह उन pixels को चुनने में मदद करता है जो एक निश्चित रंग रखते है
अगला महत्वपूर्ण चुनाव है कि आप अपने चुनाव में कौनसा mode रखना चाहते हैं
composite mode mode हुए red green और blue channels की gray value है
आप अपने चुनाव के आधार के लिए red green blue channel या hue saturation या value channel चुन सकते हैं
अब fuzzy select tool का प्रयास करते हैं
मैं सिर्फ image में click करती हूँ और threshold zero है अतः अब देखते हैं क्या होता है
मैं एक चुनाव बनाती हूँ जिसका आकार एक pixel है
अब मैं threshold को बढ़ाकर 30 करती हूँ और image में click करती हूँ और यहाँ toggle quick mask पर click करती हूँ
अब आप now क्षेत्र देख सकते हैं जो चुना गया है
मैं quick mask toggle को अचयनित करती हूँ टूल बॉक्स प्राप्त करने के लिए टैब दबाएं और tab कुछ अचयनित करने के लिए shift + ctrl + a दबाएं
मैं इसे भिन्न तरीके से कर सकती हूँ और जिसके लिए मैं threshold को घटाकर zero करती हूँ और image पर click करती हूँ और अब मैं mouse को दायीं ओर नीचे की तरफ खींच रही हूँ
जब मैं threshold को बढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इस blue क्षेत्र में जा रही हूँ लेकिन मैं अभी भी दीवार पर हूँ
मुझे लगता है कि यह tool graphic डिज़ाइनर्स के लिए अधिक उपयोगी है और photographers के लिए नहीं
आप बस mouse को खींचकर threshold को बदल सकते हैं
यह colour selection tool में वही कार्य करता है
मैं select by को composite से hue में बदलती hue और उसी point पर click करती hue और नीचे draw करती hue
आप देख सकते हैं कि मेरे पास दीवार के नीले हरे भाग का पहले से कहीं बेहतर चयन है
अतः इस tool के साथ रंग परिभाषा का सही method चुनना अच्छे परिणाम देता है
मैं quick mask पर click करती हूँ और आप देखते हैं यह लगभग ठीक है केवल कुछ भाग सुधारे जाने हैं और मैं यह quick mask में painting से करुँगी और इन selection tools से नहीं
अगर आप mode चुनने के बारे में उलझन में हैं तो आप अपनी image को चैनल mode में भिन्न channels में देख सकते हैं
blue channel चुनें और आप देखते हैं कि सब कुछ लगभग वही blue value रखता है
green channel में यहाँ कुछ भिन्नताएं हैं
red channel में यहाँ यह लगभग समान है
अतः चुनाव के लिए मैं green channel चुनूँगी या इस स्थिति में ह्यू channel
selecting colour यहाँ अगला tool है और यहाँ इसमें वही function और वही विकल्प हैं
इसमें केवल एक अंतर है
अगर आप यहाँ click करते हैं तो इस रंग के साथ आप सारे क्षत्रों को चुनेंगे और एक निकटवर्ती क्षेत्र को नहीं
colour selection tool सारे समान रंग वाले क्षत्रों को चुनता है
अगले tool का name intelligent scissors या scissors selection tool है
यह algorithm किनारों को ढूँढता है और चुनाव के साथ उनका अनुसरण करने की कोशिश करता है
और यहाँ मैं इन letter boxes को चुनना चाहती हूँ
अतः मैं selection tool को सक्रिय करती हूँ और एक points यहाँ खींचती हूँ और मुझे cursor के पास एक plus साइन मिलता है और मैं बस points को चुनती हूँ
इस algorithm को borders का अनुसरण करना चाहिए और आप यहाँ देख सकते हैं इसने दूसरा रास्ता नहीं लिया बल्कि अंदर का रास्ता लिया
मैं image में zoom करती हूँ और मैं इस point को यहाँ तक draw कर सकती हूँ और इस point को चुनने में गलती हुई थी
अतः मैं इन points को ऊपर खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि algorithm border का अनुसरण करता है अगर आप उचित जानकारी देते हैं कि अनुसरण कहाँ करना है
यह बहुत अच्छा दिखता है लेकिन आमतौर पर मैं यह प्रयोग नहीं करती हूँ क्योंकि इसे करने के बेहतर तरीके भी हैं
मुझे लगता है कि मैं colour selection tool प्रयोग करुँगी क्योंकि यह हमेशा गलत रास्ता लेता है
अतः मैंने चुनाव के साथ ख़त्म किया
मैं बस यहाँ पहले प्वॉइंट पर click करती हूँ और cursor plus में बदल जाता है
अब अगला point रखती हूँ और मेरे पास इसके बाहर loop बनाती हुई ये दो rings हैं
मैं अभी भी यहाँ चारो तरफ point को घुमा सकती हूँ और चुनाव को बेहतर बना सकती हूँ
अतः जब मैं चुनाव पर दूसरी बार click करती हूँ तो चुनाव हो जाता है
और quality देखने के लिए मैं quick mask को सक्रीय करती हूँ और इसमें zoom करती हूँ
अब मैं चुनाव के चारो तरफ देखती हूँ
यहाँ here गलती है मुझे यहाँ clicked करना चाहिए था
अतः यह काफ़ी intelligent सिज़र्ज़ है
अगला और अंतिम tool जो आज मैं cover करना चाहती हूँ वो foreground selection tool है
कुछ समय पहले जब यह algorithm आया तो काफ़ी सनसनी फ़ैलाने वाला था लेकिन gimp में इसका प्रयोग it सनसनीखेज़ नहीं था
लेकिन इसकी एक कोशिश करते हैं
यहाँ वही modes हैं और antialiasing सक्रीय होने के योग्य नहीं है
और यहाँ मैं एक single क्षेत्र चुनना चाहती हूँ और मैं स्टैचू को चुनना चाहती हूँ
अतः बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पहले मैं image को zoom करती हूँ
अब मैं selection tool चुनती हूँ और मैं निकटवर्ती क्षेत्र या भिन्न क्षेत्र चुन सकती हूँ लेकिन मैं निकटवर्ती क्षेत्र चुनती हूँ
पहले मैं automatic laser tool से यहाँ एक रफ़ selection बनाती हूँ और अब आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र अचयनित है rough नीले रंग में है
यहाँ मैंने एक brush चुना है और मैं इस slider से brush का व्यास नियंत्रित कर सकती हूँ और जो मैं चुनना चाहती हूँ उस पूरी चीज़ पर paint करती हूँ
मुझे देखना है कि मुझे वो चीज़ नहीं चुनना है जो मैं image में नही रखना चाहती
जब मैं mouse button छोड़ती हूँ तो algorithm कार्य करना शुरू करता है और यहाँ कुछ क्षेत्रों को चुना जाना है
हर बार selection अपडेट होता है और वह चीज़ें जिन पर मैंने painted किया है उनके समान क्षेत्र चुने जाते हैं
अब मैं mark background पर click करती हूँ और background को पेंट करना शुरू करती हूँ जो मैं अपनी image में नहीं रखना चाहती
यह tool अच्छी तरह कार्य करता है जब चुने हुए भाग और चीज़ें जो अचयनित है के बीच ज़्यादा अंतर होता है और यहाँ अंतर ज़्यादा अधिक नहीं है
selection को स्वीकार करने के लिए enter दबाएं
मुझे लगता है आपको अनुमान हो गया होगा कि यह tool कैसे कार्य करता है
path tool भी इस भाग से सम्बन्ध रखता है लेकिन मैं उसे कभी और cover करुँगी
select menu में कुछ अन्य चीज़ें हैं जो आप selections के साथ कर सकते हैं और उन्हें भी कभी और cover करुँगी
अतः इस tutorial के लिए इतना ही काफी था
अब मुझे कुछ टिप्पणी भेजें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले show में नयी चीज़ें होंगी जो दर्शकों द्वारा बनाया गया कंटेंट हैं
आपको meetthegimp org पर show notes में इस फ़ाइल के लिए एक link मिलेगा और अगर आप कुछ comment देना चाहते हैं तो कृपया अवश्य दें